दो दो कुर्सी है। जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं।

यह एक खाने का टेबुल है।

और नदी में एक नाव भी चल रही है जिसके ऊपर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक जिम सेंटर है।

यह एक कहीं का दुकान है।

और कहीं अलमारी भी बहुत सारे दिख रहे हैं।

उसके सामने में एक फोर व्हीलर हैं जो लाल कलर के दिख रहे हैं ।

फोर व्हीलर के पीछे शीशा का खिड़की भी या दरवाजा दिख रहा है।

अहह नीचे में पलस्तर किए गए हैं।

यह एक मोबाइल का दुकान है।

जो लाल कलर के सभी पैजामा भी पहने हुए है।

हर दुकान पे फूल दिख रहा है।

ये फूल लाल दिख रहे है।

जिसमें बहुत सारा औरत सफेद कलर का साड़ी पहनी हुई है।

यह कई स्कूल का तस्वीर है ये।

बैठा हुआ है और उसके साइड में बहुत सारे गाड़ियां भी दिखाई दे रहे हैं।